ये सामने चित्र एक बस दिखा रही है।

यहां पे ये लोग पैसे निकाल रहे हैं और ये ब्लैक कलर की मशीन है।

और यहां से एक बरामदा है और नीचे भी एक बरामदा है।

दिर को झंडे लगाए गए हैं तीन चारों तरफ से।

ऊपर बोर्ड है और टीन लगाई गई है उ --